चला के हो रहा है उस पार।

वर्क कर रहे हैं काम कर रहे हैं चार-पाँच आदमी क्या बोले बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भव्य दृश्य है इस प्रतिमा का कौन गाड़ी --

पानी के लिए जो झरना होता है ए वो लगा हुआ है कुछ टावर दिख रहे हैं।

किले में बहुत अच्छा दिख रहा है कलर दो-तीन कलर के हैं गुम्बद है बाकी तारें गयी हुई है दहिने साइड में पेड़ है। एक बैनर जिसपे चिपकाया हुआ है बोर्ड पे ।

झरना टाइप का भी लगाया गया है जो अच्छे-अच्छे एक केबिन है।